सभी लोग माक्स पहने हुए हैं सभी लोग जैकेट भी पहने हुए हैं एक आदमी सीखा रहा है।

यहां पे कपड़े रखे हुए हैं एक लाल कपड़ा एक पीला कपड़ा एक वाइट कपड़ा उधर चरक कपड़ा है।

गोले गोले बहुत सारा घर है

की बेहतर व्यवस्था के साथ लिखा हुआ है उधर एक भगवान का कुछ फोटो लगा हुआ है।

सामने साईं बाबा का फोटो दिख रहा है।

ये एक बाथरूम का कुआं दिख रहा है यहां पे एक खटिया दिख रहा है।

यह बहुत बड़ा नदी है सामने पेड़ दिख रहा है जंगल भी है।

एक उधर मोबाइल देख रहा है वहां पे एक आदमी टोपी पहना हुआ है।

नीचे सोने वाला बनाया हुआ है उधर एक काउंटर है।

ऊपर एक मोटर है वहां से तार गया हुआ है इधर भी एक मोटर है जांच करने वाला।

यहां पे लाल स्कूटी बाइक भी है उसके पास हेलमेट भी है।

सामने पांच किलो दस किलो का उठाने वाला है उधर दरवाजा है।

उधर साइकिल भी है उधर बहुत सारा लोग खड़े हैं।